यहां पर एक बड़ा काउंटर बना हुआ है इसमें कांच लगा हुआ है।

यहाँ पर दीवाल का रंग पीला और लाल है यहाँ नीले रंग की पट्टी है।

यहां पर एक मंदिर का पिलर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक टीन की शेड बनी हुई है।

यहां पर बहोत से केले रखे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी साइकिल रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारी टेबल और चेयर रखी हैं।

यह किसी होटल के रिसेप्शन की पिक्चर है।

यहां पर एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है जिसमें पीले और गुलाबी रंग के फूल लगे हुए हैं।

यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक फर्नीचर की शॉप है।

यहाँ पर एक बाजू में दुकान दिख रही है जिसमें नीले रंग की शटर लगी हुई है।

यहां पर पत्थरों पर बनी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।